ये कार बनने के बाद बहुत ही सुन्दर लगेगी।

और समुद्र में तरह-तरह की पाए जाते हैं यहाँ पर लोगो का व्यवसाय भी होता है जिससे उनका जीवन भी चलता है। समुद्र के किनारे टहलने में बहुत ही ज़्यादा मज़ा आता --

यहाँ पर बच्चो के जीवन के बारे में बहुत ही कष्ट चीज़े सिखाई जा --

बच्चो के लिए स्कूल जाना बहोत --

यहाँ पर बहुत ही उच गुणवता और क्वालिटी के कपड़े मिलते हैं।